एक घंटा घर भी है।

देखने से ऐसा लग रहा है कि टेक्टर --

हरा कलर का ट्रेक्टर है जिसका हुड भी हला हरा कलर का है।

यह दृश्य किसी फर्नीचर दुकान का है देखने से पता चल रहा है कि इसमें--

जिसमें ज्यादा धूप से बचाने के लिए ऊपर कवर किया हुआ है।

कुछ लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

ये देखने से किसी चीज का ऑफिस लग रहा है।

दुकान बहुत बढ़िया ढंग से सजाया हुआ है।

यहीं से बिजली का सप्लाई किया जाता है।

यह दृश्य एक छोटी सी नदी का है।